ये एक चर्च है चर्च के बाहर ईसाई धरम के लोग यहाँ पे खड़े है चर्च में ये लोग प्रार्थना करने के लिए आते है यहाँ पे ईसाई धर्म की --

खड़े है यह हॉस्पिटल बहुत बड़ा है हॉस्पिटल में लोग चेकअप के लिए दिखाने के लिए आते है यहाँ पे ऑक्सीजन भी दिया जाता है।